पुस्तकालय आंगनबाड़ी जैसा लग रहा है।

पहाड़ी एरिया में घूमने में काफी जादा

जो कि किसी कंपनी के लिए होगा

क्योंकि इस होटल में रहने के लिए और --

जिससे कि यात्री को जो है --

बच्चे जाते हैं जो कि काफी किफायती दामो में बेचे जाते हैं।

काफी दिन में छायादार होते होंगे। हवा भी देता --

यहां पे भगवान बुद्ध जो है तपस्या अधिकांश किया करते थे।